जो कि बहुत ही आकर्षित लग रहे है और फूलों को लोग सजावट के लिए तोड़ते हैं और फूल बहुत ही सुगंधित होते हैं।

इस स्टेज में बोहोत सारे फूल लगाए गए हैं लाइट लगाए गए हैं और इस स्टेज को प्रोग्रामों के लिए बनाया जाता है।

यह एक पहाड़ है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे लोग आते हैं । घूमने और यहाँ पे घूमने में बहुत अच्छा लगता है । लोग यहाँ पे आते हैं घूमते हैं । अपने परिवार के साथ और --

बहोत ही सुरक्षित होती है ये बहोत स्टाइलिश होती है लोग मारुति सुजुकी की गाड़ियां खरीदना पसंद करते हैं।

पहुंचाया जाता है और ये बहोत दूर-दूर से पेट्रोल डीजल लाते हैं और पेट्रोल पंप तक पहुंचाते हैं।

यह एक रेलवे स्टेशन है और यह रेलवे स्टेशन बहुत ही बड़ा है। इस रेलवे स्टेशन में चार पटरिया है। इस रेलवे स्टेशन में बहुत सारे लोग आते हैं ट्रेन पकड़ने और यहां पर बहुत सारे ट्रेने रूकती है।